टू और थ्री लिखा हुआ है और मैं इसके अगल बगल में काफी सारे लोगों को देख पा रही हूँ | सामान रखी हुई हैं और कूलियों को भी देख पा रही हूँ ।

इस पिक्चर में मैं एक इमारत देख पा रही हूँ जोकि मिनी ग्रामीण स्टेडियम नगला टी लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में मैं एक बड़े से मैदान को देख पा रही हूँ जिसमें हरे-हरे घास उगे हुए हैं।

इस पिक्चर में मैं एक म मंदिर देख पा रही हूं और मंदिर के अगल-बगल में ऑरेंज रंग के झंडे को फहराते हुए देख पा रही हुँ।

और मै इस पेड़ पौधे को देख पा रही हूँ | पीछे पीछे तक भी है और काफी ज्यादा बड़ी सी मुझे पहाड़ भी नजर आ रही है|

और इसमें अगल-बगल में काफी सारे छ छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए नजर आ रहे हैं और मैं देख पा रही हूं बीच में थोड़ी सी जगह पे पानी भी फे फेकी हुई नजर आ रही है।

इस पिक्चर में मैं एक बड़ी सी सड़क को देख पा रही हूं। सड़क के अगल-बगल में मैं काफी ज्यादा पेड़ पौधों को देख पा रही हूं। सामने में एक साइकिल भी मुझे नजर आ रही है। सड़क पे और सीधे में एक इमारत नजर आ रही हैं। जिसके ऊपर में वी शेप का बनाया हुआ एक --

इस पिक्चर में मैं रेलवे स्टेशन को देख पा रही हूँ जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसमें मैं पटरियों को भी देख पा रही हूँ।

यह पिक्चर मैं एक पेट्रोल पंप की देख पा रही हूं जिसमें मशीनें लगी हुई हैं और मैं देख पा रही हूं कि इसमें कैमलीन उ ऑटो लिखा हुआ है।